सामने पर एक काला रंग का कार भी और उसके पीछे हरा भरा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

सामने पर बहुत सारे लड़कियां भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है और कुछ--

और बैनर भी दिख रहा है और सामने पर--

जे इस तस्वीर पर एक बड़ा सा कंपनी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे बैठने के लिए कुर्सी और टेबल भी दिख रहा।--

इस तस्वीर पर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है उसके अंदर दो इंसान भी खड़ा दिखाई दे रहा हैं।

पीकर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे तस्वीर पर एक बड़ा सा कंपनी दिखाई दे रहा है।

दुकान भी दिख रहा है जिसका रंग येलो रंग का दिखाई दे रहा है और कुछ दरवाजे भी दिखाई दे रहा है।

कुर्सी भी दिखाई दे रहा है और एक बड़ा सा टेबल भी दिख रहा है।

और स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

बैठने के लिए कुर्सी और टेबल भी दिखाई दे रहा है।

मुझे तस्वीर पर बुक शॉप दिखाई दे रहा है और बहुत सारे किताबें रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

कुछ पूजा का सामग्री भी दिखाई दे रहा है और पंडित भी दिख रहा है।

जिस कमरे पर बैठने के लिए एक सोफा दिखाई दे रहा है।

हरा रंग का ग्रास भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है और उसके अंदर दो नर्स भी दिखाई दे रहा--

कुर्सी भी दिख रहा है।

बहोत सारे पोस्टर भी लगाया हुआ दिख रहा है और कॉरिडोर भी दिखाई दे रहा है।